जिसमें एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है बाहर कुछ साइकिले टगाई--

और एक दुकान है आगे कार खड़ी है और कारो के आगे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारा सामान पड़ा है लगता है यह दुकान है जो हार्डवेयर की है जिसमें कलर --

जहां पर एक भीट है सामने दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर --

ये एक बूढ़ा आदमी उन मछलियों को काट काट कर इन्हें दे रहा है और पीछे कुछ औरतें भी बैठी हुई हैं।

बाहर दो आदमी खड़े हैं जिनके बैग टंगाई हुई है।

यह तस्वीर एक स्टेशन की है यह अर स्टेशन अर्जनसर का है।

और यहां पर स्टेशन में दो लाइटिंग दिखाई दे रही है खंभा लगा हुआ है।

इससे अच्छी सजावट के लिए यहां पर पुराने समय का एक झोपड़ा बनवाया हुआ है।

कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं बाहर एक कलश है बड़ा --

और नीचे बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है और पास में बहुत सारी दुकाने हैं यहां पर एक टेक्सी भी दिखाई दे रही है और --

यह तस्वीर ऐसी भीं राजस्थान सरकारी जगह हैं यहाँ पर --